दो आदमी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस ग्राउंड के आजू बाजू तरफ हरे हरे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर एक रेड कलर की कुर्सी भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे एक जूस का गिलास--

इस रेस्ट्रां टेबल व कुर्सी लगी हुई है।

मुझे एक कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक पार्किंग की जगह दिखाई दे रही है।